कांटो की झाड़ियाँ बनी हुई है।

यहाँ पर हाईवे रोड के साइड में एक संस्था बनी हुई है।

कोचिंग के बाहर हरे कलर के आम के पेड़ भी है।

यहां पर बहुत ही सुंदर सा एक दीवार बनाई गई है।

यहाँ कुछ सवारी अंदर चढ़ने के लिए भी खड़े हुई हैं।

यहाँ पर एक घर बना हुआ है जिसके ऊपर छत डली है उसी के सामने चप्पल रखने के लिए जगह बना हुआ है उसके ऊपर कुछ डी मैल रखी गई है घर के सामने कुछ बाइक और स्कूटियां खड़ी हैं यह एक बूढ़े दादाजी घर के अंदर जाने के लिए चल रहे हैं।

उसके अव ऊपर कुछ राउंड - राउंड शेप बनी हुई है |

पे बहुत से पब्लिक घूम रहे हैं।

ये गेट के पास ही बहुत ही सुंदर-सुंदर फूल लगे हुए हैं ।

जहां पर बहुत से प्रकार की गिफ्ट अवेलेबल किए जाते है।

यहाँ दीवारों में बहोत ही गंदगी है और --

यहां पर एक जू बना हुआ है।

ढाबे के सामने से एक हाईवे रोड बनी हुई है।

जहां पे दीवार पे एक एल.इ.डी. लाइट लगी हुइ है।

यहां पर दो व्यक्ति आए हुए हैं।

यहाँ पर एक हाईवे रोड बना हुआ है।

यहाँ पे बहुत से पक्षियाँ भी उड़ रही है।

यहां ई-रिक्शा ब्लू कलर का है।

और यहाँ पे बैठने के लिए स्टेज पे दो-तीन कुर्सियाँ रखी गई है।

सैलून के आस-पास बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है।